मार्केट छे मोटरसाइकिल छे रिक्शा स दुकान छे अल्लु छे बैगन छे।

रोड छय लाइट छय भुकभुकीय छय ताड़ छय।